इस फोटो में कम्प्यूटर्स है कुछ टेबलेट्स रखे हुये है कुछ कुर्सिया रखी हुई है कुछ पोस्टर है केलेंडर है एक चेयर है कुछ टेबल्स है।

दुकान का नाम शारदा एंटरप्राइज है उसके सामने एल.सी.डी. के बॉक्स पड़े हुए है।

टेबल के पास में कुर्सियां रखी हुई है टॉप टाईप कलर की कुर्सियां है एक रेड कलर है एक ब्लेक कलर की कुर्सियां है सामने घाली --

यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है कार का नम्बर आर जे चौदह टी इ दस उनियासी है सामने एक दुकान है दुकान के ऊपर एक लोहे की लाईट लगी हुई हैं।

यह एक बड़ी बिल्डिंग जैसी है यहाँ पर अलग अलग बालकनी जैसी बनी हुई है काच के खिडकिया है।